इस फोटो में हमें एक फैन भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है इस फोटो में हमें बहुत सारे घोड़े दिखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि पेंटेड हैं।

इस फोटो में हमें बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है।